यह एक स्कूल है यह स्कूल सरकारी स्कूल है यह स्कूल के बाहर बहुत बड़े-बड़े मैदान है मैदानों में काफी घास लगे हुए हैं ।

पे बोहोत सारी लड़की खेल में दौड़ रही है बोहोत सारी लड़की दौड़ने के लिए आई हुई है।